एक घर है इस घर के बीच में एक गाड़ी रखी हुई है और यहाँ एक बाइक भी खड़ी है यह गाड़ी एकदम खाली है इस घर के चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ।

इस सड़क के बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर जैसा बनाया हुआ है और इसके बगल में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं यह सड़क एकदम ही खाली है ।

एक बहुत बड़ा घर है इस घर को बहुत अच्छे तरीके से लाइट से सजाया गया है इस घर में बहुत सारे खिड़कियां लगी हुई है और इस घर में बहुत सारे लोग रहते है इस घर की आजु-बाजू और भी बहुत बड़े-बड़े घर बने हुए है।

यहाँ पे इस कालेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इस कालेज के द्वार पर एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है।